साइलैब के plotting 2d graphs के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
मानिये कि आपके कंप्यूटर पर साइलैब संस्थापित किया गया है हम साइलैब में प्लॉट्स की चर्चा करेंगे
साइलैब अनेक प्रकार के 2d और 3d प्लॉट्स को बनाने के और आवश्यकतानुसार बदलाव करने के भिन्न तरीके देता है
अनेक सामान्य चार्ट्स जो साइलैब में बनाये जा सकते हैं निम्न हैं: xy प्लॉट्स कन्टुर contour प्लॉट्स 3d प्लॉट्स हिस्टोग्राम्स बार चार्ट्स आदि
अब अपना साइलैब कंसोल विंडो खोलें
मैं कमांड्स को कट और पेस्ट करने के लिए plottingsce फाइल प्रयोग करुँगी
प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स के एक सेट की ज़रूरत है अब हम समान अन्तराल के पॉइंट्स का एक क्रम बनाते हैं
यह लिनस्पेस linspace कमांड के द्वारा किया जा सकता है जो linearly equally spaced vector यानी रैखिक एवं समान अन्तराल वाला वेक्टर बनाता है
उदाहरणस्वरूप
x 1 से 10 के बीच रैखिक समान अन्तराल वाले 5 पॉइंट्स के साथ एक रो row वेक्टर है
उसी प्रकार y 1 से 20 के बीच रैखिक समान अन्तराल वाले 5 पॉइंट्स के साथ एक रो row वेक्टर है
linspace पर अधिक जानकारी हेल्प डॉक्यूमेंटेशन से प्राप्त की जा सकती है
अब हम प्लॉट फंक्शन प्रयोग करके आर्ग्यूमेंट्स x और y के साथ ग्राफ बनाएंगे
यह वैसा ही है जैसे मैटलैब में उपयोग किया
प्लॉट xy x बनाम y का एक ग्राफ बनाता है जैसा आप देखते हैं
ध्यान दें कि ग्राफ़िक विंडो को 0 से लेबल किया गया है
हम xset फंक्शन प्रयोग करके एक अन्य ग्राफ़िक विंडो खोलेंगे
मैं इसे बन्द करुँगी
xset फंक्शन को कट करें साइलैब में पेस्ट करें एंटर दबाएं
आप ग्राफ़िक विंडो नंबर 1 देखेंगे
ध्यान दें इस फंक्शन को विंडो और 1 नामक दो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए है
अगला ग्राफ इस विंडो पर बनाया जायेगा
साइलैब के लिए प्लॉट 2d 2d ग्राफ्स बनाने में प्रयोग हुआ स्वभाविक फंक्शन है
प्लॉट2d कमांड x बनाम y का ग्राफ बनाता है जैसा आप देखते हैं
ध्यान दें कि यहाँ स्टाइल नामक एक तीसरा आर्ग्यूमेंट है
स्टाइल आर्ग्यूमेंट वैकल्पिक है यह प्लॉट के प्रदर्शन को आवश्यकतानुसार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है
स्टाइल की पॉज़िटिव वैल्यू के लिए भिन्न रंगों वाला सीधा कर्व है जैसे हमारे केस में 3 के लिए हरा है
स्टाइल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है
नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए अपने आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें और प्रदर्शन में अंतर देखें
चौथा आर्ग्यूमेंट पास करके हम x और y एक्सिस के लिए शुरूआती और अन्तिम पॉइंट्स भी सेट कर सकते हैं
यह rect कहा जाता है जैसा आप देखते हैं
हमारे पास x एक्सिस 1 से शुरू होकर 10 तक और y एक्सिस 1 से 20 तक है
rect कमांड में आर्ग्यूमेंट का क्रम xmin ymin xmax और ymax है
अब हम टाइटल एक्सिस और लेजेंड्स के बारे में सीखते हैं
एक्सिस को लेबल करने के लिए और प्लॉट को शीर्षक देने के लिए हम कमांड्स टाइटल x लेबल और y लेबल प्रयोग कर सकते हैं
मैं कमांड्स के इस सेट को कट करुँगी और कंसोल पर पेस्ट करुँगी एंटर दबाएं
आप देखेंगे कि x एक्सिस को x y axis को y और ग्राफ का शीर्षक माय टाइटल my title लेबल किया गया है
अगर आप प्लॉट का शीर्षक और एक्सिस 3 के बजाय सिंगल कमांड में देना चाहें तो
इस उद्देश्य के लिए हम सारे 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ xtitle कमांड प्रयोग कर सकते हैं
मैं इस कमांड को कट करुँगी और साइलैब में पेस्ट करुँगी एंटर दबाएं
अब आप देखते हैं कि x एक्सिस का लेबल x एक्सिस y एक्सिस और शीर्षक my title है
clf फंक्शन जो अभी मैं टाइप कर रही हूँ ग्राफ़िक विंडो को खाली कर देगा जैसा आप देखते हैं
उसी ग्राफ़िक विंडो पर भिन्न ग्राफ बनाते समय यह उपयोगी है
मैं इस विंडो को बन्द करुँगी
कभीकभी हमें एक ही प्लॉट में डेटा के दो सेट की तुलना करने की ज़रुरत होती है जो है x डेटा का एक सेट और y डेटा के दो सेट
अब इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं मैं नीचे जाऊँगी
लिनस्पेस linspace कमांड प्रयोग करके हम रो वेक्टर में x एक्सिस पॉइंट्स परिभाषित करेंगे
एक फंक्शन को परिभाषित करते हैं
y1 = x स्क्वायर
x बनाम y1 प्लॉट करें
अन्य फंक्शन y2 = 2x स्क्वायर को परिभाषित करें
x बनाम y2 प्लॉट करें
हम अपने ग्राफ को लेबल और शीर्षक भी देंगे
ध्यान दें कि कर्व का प्रदर्शन बदलने के लिए हमने प्लॉट फंक्शन को अतिरिक्त कमांड्स 0 ज़ीरो माइनस और + दी हैं
ये आर्ग्यूमेंट्स प्लॉट2d फंक्शन के हिस्से नहीं हैं
ये सिर्फ प्लॉट फंक्शन के साथ प्रयोग किये जा सकते हैं
मैं इन कमांड्स के सेट को कॉपी करुँगी और साइलैब कंसोल में पेस्ट करुँगी
आप ग्राफ देखते हैं
क्या यह जानने के लिए एक बड़ी मदद नहीं होगी कि कौन सा कर्व किस फंक्शन से सम्बद्ध है
यह लेजेंड legend कमांड प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है जैसा आप देखते हैं
0 कर्व फंक्शन y1=x स्क्वायर दर्शाता है और + फंक्शन y2=2*x^2 y2=2x स्क्वायर दर्शाता है
मैं इस ग्राफ़िक विंडो को बन्द करुँगी
अब हम प्लॉट2d डेमोज़ demos और सबप्लॉट subplot फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे
साइलैब अपने सारे प्रधान फंक्शन्स के लिए डेमोज़ प्रदान करता है
प्लॉट2d के डेमोज़ को डेमॉन्स्ट्रेशन टैब से देखा जा सकता है
ग्राफ़िक्स पर क्लिक करें 2d_3d प्लॉट्स पर क्लिक करें और दिए गए भिन्न डेमोज़ में से डेमो demo सलेक्ट करें
मैं प्लॉट2d पर क्लिक करुँगी
आप डेमो ग्राफ देखेंगे
यहाँ व्यू कोड बटन पर क्लिक करके भी इस ग्राफ के लिए कोड देखा जा सकता है
यह लिंक mac os में नहीं खुलता लेकिन यह विंडोज़ और लिनक्स पर कार्य करता है
फिर भी mac में कोड डिरेक्टरी के द्वारा देखा जा सकता है
अब terminal पर जाते हैं
इस समय मैं साइलैब 52 के डेमोस डिरेक्टरी में हूँ जैसा प्रदर्शित है
इस डिरेक्टरी का पूरा पाथ यहाँ दिखाया गया है
हम उपलब्ध डेमोज़ की सूची देखने के लिए ls टाइप करेंगे जैसा आप यहाँ देखते हैं
फिर हम 2d_3d_प्लॉट्स डिरेक्टरी चुनेंगे और एंटर दबाएंगे
sce फाइल्स में उपलब्ध अनेक डेमो कोड को देखने के लिए दोबारा ls टाइप करें
हम डेमो के लिए कोड देखेंगे जो हमने पहले देख लिए हैं
टाइप करें more plot2ddemडेमsce और एंटर दबाएं
यहाँ आप प्लॉट2d फंक्शन के डेमो ग्राफ के लिए कोड देखेंगे
मैं टर्मिनल बन्द करुँगी
मैं डेमो ग्राफ और डेमो विंडो बन्द करुँगी
उसी प्रकार आप अन्य डेमोस को पूरा देख सकते हैं और साइलैब जाँच सकते हैं
अब हम सबप्लॉट फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं
सबप्लॉट फंक्शन ग्राफ़िक्स विंडो को सबविंडोज़ की मेट्रिक्स में विभाजित करता है
इस फंक्शन को समझाने के लिए हम साइलैब में 2d ग्राफ्स बनाने के लिए डेमोस प्रयोग करेंगे
उदाहरण के लिए अपने कंसोल पर टाइप करें plot 2d और इस फंक्शन के लिए डेमो प्लॉट देखें
मैं इस विंडो को बन्द करुँगी
सबप्लॉट कमांड ग्राफ़िक विंडो को सबप्लॉट कमांड में पहले दो आर्ग्यूमेंट्स से प्रदर्शित सबविंडोज़ के 2 बाइ 2 मेट्रिक्स में विभाजित करता है
तीसरा आर्ग्यूमेंट उस वर्तमान विंडो को दिखाता है जिसमें वो प्लॉट बनाया जायेगा
इस पूरे कमांड्स के सेट को साइलैब कंसोल पर कॉपी करके मैं इसे निष्पादित करुँगी
आप एक ही प्लॉट विंडो में 4 प्लॉट्स देख सकते हैं
प्राप्त प्लॉट आपके कंप्यूटर पर इमेज की तरह सेव किया जा सकता है
ग्राफ़िक विंडोgraphic window पर क्लिक करें फाइल मेन्यूfile menu पर जाएँ एक्सपोर्ट टूexport to चुनें
अपने प्लॉट को उपयुक्त शीर्षक दें
अपनी फाइल को सेव करने के लिए एक नियत फोल्डर चुनें
फाइल फॉर्मेट चुनें जिसमें आप अपनी इमेज को देखना चाहते हैं
मैं jpeg फॉर्मेट चुनूँगी और सेव पर क्लिक करुँगी
इमेज खोलने के लिए डिरेक्टरी से ब्राउज़ करें और अपने आप निश्चित करें कि यह सेव किया गया है या नहीं
यह हमें साइलैब में प्लॉटिंग के इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
साइलैब में बहुत से अन्य फंक्शन्स हैं जो अन्य स्पोकन ट्यूटोरियल्स में बताये जायेंगे
साइलैब लिंक्स को देखते रहें
स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं भारत सरकार के एम एच आर डी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित हैं
इस पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है
मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद